यहां देखियेयह नजारा कितना मस्त है। यह नजारा भी आप लोग देख सकते है इतना इतना अच्छा घर बना हुआ है। यह घर के साथ में--

इतना अच्छा भयंकर लग रहा है देखने में इतना सुंदर लग रहा है। मत पूछिये बहुत सुंदर लग रहा है। यह भयंकर यह चीज देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। मत पूछिये इतना--

यहां पे देखिये यहां पे देखिये। देखने में इतना अच्छा मॉल है। इतना अच्छा मॉल है। यह कपडा वाला है। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है कपड़ा का। कपडा कपड़ा इतना मस्त रहता है। कपड़ा। यह मत पूछिये। बहुत सुंदर कपड़ा है।

इतना बढियां लगता है देखने में। बहुत सुंदर लगता है। इतना मस्त है। मत पूछिये। बहुत सुंदर है। बहुत बढियां। बहुत भयंकर है।

यहा देखिये मिस्त्री इतना अच्छा काम कर रहे है इतना अच्छा छड़ बिछाया है की इतना हम लोग का ऐसा आएगा भी नहीं। बिछाने। और इन लोग का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा रहता है इतना अच्छा अच्छा काम करते है ये लोग की मत पूछिए बहुत सुंदर से भी काम कर --

यहाँ देखिये रोड कितना अच्छा है। रोड बहुत है। यह है ना यह बहुत बढियां है। बहुत बढियां लग रहा है। भयंकर है बहुत अच्छा दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपलोग देख सकते है। कितना अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर भी लग रहा है।